और साथ में और भी वूमेन दिखाई दे रही हैं।

ये एक रास्ते का पिक है यहां कुछ मोटरसाइकल और साइकल लगे हुए--

और पीछे एक रैक बना हुआ है उसमें बहुत सारे रिम लगा रखे हैं और चुपे का ढेर लगा हुआ है।

और कुछ बच्चों के खिलौने वाली और कुछ सब्जियों वाली सड़क पे लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं और साथ में मार्केट दिखाई दे रही है।

ये एक वाटर पार्क का पिक है।

चेहरे पे एक अ ला चेयर के साथ टेबल लगा हुआ है टेबल पे लैपटॉप पड़ा--

इस पिक में एक ब्रिज दिख रहा है लोहे का बना हुआ--

दीवार पर रैक बने हुए उसमें बहोत सारे अनस्ट्रेचेबल कपड़े रखे हुए हैं।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

उसके अंदर कुछ व्यक्ति चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं।

ये एक पार्किंग का पिक है यहां एक बच्चों के खेलने वाला झूला लगा हुआ है।

यहां काउंटर पे बहोत सारे डब्बे रखे हुए हैं।

और लाइटें जगती हुई नजर आ रही है।